और बिल्डिंग भी नजर आ रही है ऊपर की तरफ नीले रंग की--

साथ साथ कुछ और समान भी साफ देखा जा सकता है तथा पीछे की तरफ लाइटिंग भी साफ दिखाई दे रही है उनके साथ ही में--

सफेद रंग की है तथा आसपास कुछ पेड़ भी नज़र आ रहै हैं तथा पीछे की तरफ एक ओर मिट्टी के रंग की दिवार साफ देखी--

जा सकती है ऊपर की तरफ दिवार के साथ ही में कुछ और जगह मिट्टी के रंग की देखी--

तथा पीछे की ओर जो वृक्ष है वो काफ़ी हरे भरे है तथा साथ--

लोहे की कुछ वस्तु नजर आ रही है जिसके पांचो तरफ एक एक खम्भा निकला हुआ है तथा नीचे की तरफ फर्श भी देखा जा सकता है |

एक बिल्डिंग साफ नज़र आ रही है जहाँ सामने की और डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की फ़ोटो लगी हुई है तथा ऊपर की तरफ लाइटिंग भी --

पीछे की तरफ दीवारों का रंग पिला सफेद तथा लाल है और उसके साथ ही में --

पीछे की तरफ कुछ राशन का समान नजर आ रहा है तथा कुछ बोतले रखी हुई है जिनके साथ ही में कुछ डब्बे --

गुलाबी रंग के फुल नजर आ रहै हैं तथा पीछे की तरफ वंडर वर्ल्ड लिखा हुआ है जिस पर एक।

इंडियन आयल पेट्रोल पंप साफ देखा जा सकता है जिसके बाहर एक इन्नोवा कार खड़ी है।